यहां पे एक झील टाइप लग रहा है।

और बहुत सारे व्यक्ति भी दिखाई पड़ रहे हैं और चल भी रहे हैं।

यहां पे बड़े बड़े पत्थर रखा हुआ है ये घर में लगाया जाता है।

यहां पे समान मिलता है फूलों से सजाया गया है।

यहां पे बहोत सारे लाइटें भी लगीं हुई हैं।

यहां पर एक घर बना हुआ है और एक गेट भी लगा हुआ है।

एक व्यक्ति से पूछ रहा है वह बूढ़ा व्यक्ति कुर्सी पे बैठा है।